इसमें बहोत से पेड़ लगे हुए है।

यहाँ पर एक झोपड़ी भी दिखाई दे रही है।

जोकि ग्रे रंग की हैं।

ब्राउन लेगी पहने है।

यहाँ आसमान साफ दिखाई दे रहा है धुप आती दिख रही है।

यहाँ पर कुछ मैग्गी की पैकेट बिस्किट और कुछ और पैकेट रखी हुई है।

जोकि ऑरेंज पर्पल नीले सफ़ेद रंग की दिख रही हैं।

इससे बड़े -- बड़े पहाड़ से पानी आ रहा है।

और पानी में कुछ सिल्लिया दिख रही है।

और पर्पल जैकेट पहने है और एक लाल टोपी लगाये हुए हैं।

यहाँ पर एक लड़का लाल रंग की टी-शर्ट और ब्लैक जींस पहने हैं।

यहाँ कुछ रिबिन भी दिख रही है यहाँ दूर एक सफ़ेद बिल्डिंग --

एक लड़की पर्पल टॉप और ब्लू जीन्स पेहने हुए हैं।